ये एक रोड है। रोड के बगल में होटल है। दुर्गा स्वीट्स साइड में --

कुंभ मेला का भी आयोजन यहां होता है।

ये सेंट्रल बैंक का ए.टी.एम. है। दो आदमी यहां लाइन में खड़े है‍‌ पैसा निकालने के लिए --